यहाँ पे नाईट है और नाईट में कोई प्रोग्राम क-किया जा रहा है। और लाइट लगी हुई है काफी लोग देखने के लिए आ रखे हैं।

उनके सर पे एक छोटा सा जटा बना हुआ है शांत मुद्रा में है।

है जिसमें काफी सारे कांच की खिड़कियाँ लगी हुई है और ये वाइट कलर का पेंट है इसमें ब्राउन कलर का भी पेंट किया गया है और छोटा सा बारीकी के जैसे डिज़ाइन बनाया गया है।